जिसमें लाल रंग के बल्ब से सुखमयी मैरिज भवन लिखा हुआ है।

एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर दो तीन डेस्क --

कच्ची सड़क के बगल में एक चर्च है चर्च में बाउंड्री से--

एक बुजुर्ग आदमी के पेंटिंग लगी हुई है |

एक नीट नेट का क्लॉथ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये बहुत पुराने मॉडल का--